रखा हुआ है टावर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है एक कपड़ो की जिसपर फूल टंगे-फूल टंगे हुए है| ऊपर और कपड़े टंगे हुए है| पानी पीने के लिए एक बाल्टी रखी हुई है।

यहाँ पर एक भवन सा दिखाई दे रहा है जिसमे गेट लगा हुआ है। एक कार देख एक गाड़ी दिखाई दे रही है।